काम कर रहे है यह ऑफिस में बहुत सारे पंखे एवं ए.सी. लगे हुए है बहुत सारे टेबल कुसी लगे हैं यहाँ पर बहुत ही बड़े इन होटल की लगे हुए हैं ।

यहाँ पर यह बरामदा पर बैठ कर के अपना प्रोजेक्ट कम्पलीट कर रही है बहुत सारे --

बहुत सारे छोटे-छोटे घासे लगे हुए हैं यह फील्ड में बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं बहुत से आदमी --

सिर्फ आदमी है। आते-जाते है। यह-यह सड़क किनारे बहुत बड़े-बड़े नारियल के भी पेड़ लगे हुए है। यहाँ पर --